सब तरफ ऐसे थोड़े थोड़ा पानी ज्यादा है पानी नहीं है सब तरफ आस पास झाड़ा है।

एक स्लैप का घर बना रहे ऊपर साइड लकड़ियां लगाए हुए--

होटल जैसा है उसके अंदर कुर्सियां एवं सारे बाहर कुंडे लगे हुए हैं एक पई पे और--

टू व्हीलर का शोरूम है। बहोत सारे न्यू टू व्हीलर है।

स्लैप का घर बना रहे दीवार वो सभ डालें हुए हैं और पानी--